इस चित्र में किसी वर्कशॉप या फैक्ट्री का दृश्य दिखाया गया है।

सामने जमीन पर बहुत सारे लोहे के पार्ट्स पड़े हुए हैं।

दीवारें और छत धातु की बीमा और फ्रेम से बने हुए हैं।

कर दो मैं कई तरह के रंग पैटर्न और डिजाइन दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक स्टैंड है उस पर कुछ उपकरण लगा हुआ है।

नदी का पानी मटमैला है।

आधी मछलियां एक पीले रंग के डब्बे में रखी हुई है।

यार किसी लाइब्रेरी या स्टडी हॉल का चित्र है।

में छात्रों के लिए कुर्सियां और टेबल व्यवस्थित रूप से रखी गई है।

काउंटर के ऊपर एक स्क्रूड्राइवर और एक पिलास रखा हुआ है।

इस चित्र में एक पार्क को दिखाया गया है।

नाव को रस्सी से बांध कर रखा गया है।

यह तस्वीर किसी कैफे या आइसक्रीम पार्लर की है।

सामने दीवाल पर एक नोटिस बोर्ड लगाया गया है।

कपड़ों को लकड़ी के रेक में रखा गया है।

सामने पार्क का गेट है जिस पर रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लिखा हुआ है।

बाईं और कुर्सी पर एक बैग रखा हुआ है।